ये जो टीशर्ट पहना हुआ है।

और यहाँ पे तीन चार ठो लम्बा-लम्बा टेबल जैसा बना हुआ है पत्थर का जिसपे जो है --

बहोत सारे समान रखे हुए हैं नीचे जो हैं टाइल्स लगा हुआ है ।

सामने एक बड़ा-सा घर दिख रहा है जो की लम्बा-सा है ।

सामने एक बड़ा सा घर दिख रहा है। घर के ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कि --

जो कि ये किसी घांस पे घूम रही है। नं नीचे में बहुत सारे हरे कलर के घांस जमे हुए हैं।

कप का जो डिज़ाइन है सब का अलग-अलग डिज़ाइन है।

ये जो है ब्लैक कलर में इसमें जो है ऑरेंज कलर का टिका भी लगा हुआ है।

अन में एक ऑटो लगा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े है जो कि वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

सामने एक बड़ा सा एक झरना दिख रहा है। यहाँ पे जो है एक पहाड़ से --

सामने में एक छोटा सा पार्क नज़र जैसा आ रहा है कोई कॉलोनी जैसा लग रहा है।

कलर जो है ऑरेंज कलर का है इसमें जो है एस.एम. कॉलेज हाजीपुर लिखा हुआ है ।

यहाँ बाहर में बहुत सारे लोग जो है खड़े हुए हैं ।

इसमें के बहुत सारा कपड़ा रखे हुए हैं रेख पे।

और यहाँ बहुत सारा लोग खरीद भी रहे है ऊपर में ए.सी. लगा हुआ है डिस्काउंट कपड़े का टैग लगा है।

वहां पे एक गाड़ी लगा हुआ है।

फील्ड में जो है कुछ क्रिकेट खेलने के लिए --

पिच बनाए हुए हैं जो की चुन्ने से चारों तरफ से घेरे हुए हैं।

और वाइट कलर का मशीन है।

और एक बड़ा-सा बिल्डिंग नज़र आ रहा है बिल्डिंग के आगे में जो है।

सामने बालकोनी में ग्लास लगा हुआ है निचे में बहुत सारा बाइक खड़े हुए हैं।

यहाँ पे टेबल के ऊपर शीशे रखे हुए हैं।

सामने में एक बड़ा सा फील्ड नज़र आ रहा है।

फील्ड काफी बड़ा है उसके चारो तरफ बहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ लगाए हुए हैं हरे कलर में।

बहुत सारे लोग जो है एक्सरसाइज कर रहे है।

जो की पत्थर का बना हुआ है कटिंग कर के और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो है सेल्फी ले रही है फोटो क्लिक कर रही है।

पे बेड लगा हुआ है। बेड के ऊपर में है जो --

बेडशीट लगा हुआ है जो की ग्रीन वाइट कलर में है।

और एक बगल में इलेक्ट्रिक बोर्ड दिख रहा है सामने में बड़ा सा विंडो है।

और ये जो है पीछे में बैकग्राउंड इसका ऑरेंज --

जिसमे जो है बहुत अच्छा से डेकोरेशन किया हुआ है।

ब्रिज जो है लोहे का बना हुआ है।

खड़े हुए हैं दो-चार लोग जो है खम्भे लेकर के ऊपर में कुछ पर्दा लगा हुआ है लेकर घूम रहे हैं नीचे मेट बिछा हुआ है ।